फिरमोमेग दो रिक्षा का तस्वीर दिखाई दे रहा है जहा दो व्यक्ती खडे हुये दिखाई दे रहे है।

यहा पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है शीट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।